इस tutorial में हम सीखेंगे कि z3950 का उपयोग करके catalog में records कैसे जोड़ना है
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux operating system 1604
और koha version 1605
कृपया सुनिश्चित करें कि आप internet से जुड़े हुए हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science
cataloging standards aacr2 और marc21 का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
तो z3950 क्या है
z3950 remote computer databases से जानकारी सर्च करने और पुनः प्राप्त करने के लिए एक client–server protocol है
शुरू करते हैं
koha homepage पर koha administration पर click करें
इस पेज पर नीचे scroll करें और additional parameters पर जाएँ
फिर z3950/sru servers पर click करें
z3950/sru servers administration नामक नया पेज खुलता है
यहाँ + new z3950 server और + new sru server दो tabs हैं
+ new z3950 server टैब पर click करें
शीर्षक new z3950 server के साथ नया पेज खुलता है
ध्यान दें कि target z3950 server को जोड़ने के लिए हमें target server का विवरण पता होना चाहिए
यदि आपको किसी भी z3950 server के विवरण की जानकारी नहीं है तो आप इस url पर z3950 servers की सूची पा सकते हैं
irspy पेज खुलता है जिससे हमें कुछ विवरण भरने के लिए कहा जाता है
शुरू करते हैं
anywhere field खाली छोड़ दें
name में मैं library of congress type करूंगी
ऐसा इसलिए क्योंकि यह सबसे बड़ी library में से एक है और इसमें बड़ा bibliographical data है
फिर country field में dropdown से united states चुनें
protocol में dropdown से z3950 चुनें
आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शेष विवरण भर सकते हैं
फिर पेज के नीचे search button पर click करें
search रिजल्ट के साथ नया पेज खुलता है
9 libraries की एक सूची विभिन्न संख्याओं के तहत प्रदर्शित की जाती है जैसे कि
इन विवरणों का उपयोग koha में new z3950 server पर विवरण भरने के लिए किया जायेगा
ध्यान दें कि आप libraries की एक अलग सूची देख सकते हैं जो 10 से अधिक हो सकती है
याद रखेंकिसी भी target z3950 server जोड़ने से पहले कृपया host connection reliability सुनिश्चित करें
मैं title : library of congress पर click करूंगी
शीर्षक library of congress के साथ नया पेज खुलता है
इस पेज को खुला रखें क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद इस पेज पर विवरण की आवश्यकता होगी
अब हम new z3950 server पेज पर वापस जाते हैं जो हमने इस tutorial में पहले खुला छोड़ा था
और इस पेज पर आवश्यक विवरण भरना शुरू करें
विवरण library of congress पेज में हैं जिसे हमने खुला रखा है
तो शुरू करते हैं
new z3950 server पेज पर server name में library of congress type करें
यह विवरण library of congress पेज में name section है
मैंने कुछ अन्य विवरणों को new z3950 server पेज पर भर दिया है जिसे मैंने library of congress पेज से नोट किया था
आप video को रोक सकते हैं और अपनी आवश्यकतानुसार विवरण भर सकते हैं
कृपया ध्यान दें कि लाल रंग में चिह्नित fields अनिवार्य हैं
फिर हम preselected searched by default चैकबॉक्स देखते हैं
यदि आप default रूप से इस विशेष library के database को हमेशा searched करना चाहते हैं तो इसे click करें
अब हम rank display order field पर आते हैं
ध्यान दें कि यदि आप एकाधिक z3950 targets जोड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें rank के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं
syntax के लिए drop down से मैं marc21/usmarc चुनूँगी
encoding के लिए koha default रूप से utf8 चुनता है मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी
लेकिन आप अपनी आवश्यकतानुसार कोई any value चुन सकते हैं
अगला time out 0 its like not set है
यहां परिणामों की प्रतीक्षा करने के लिए seconds की संख्या type करें
record type के लिए koha default रूप से bibliographic चुनता है
सभी विवरण भरने के बाद पेज के नीचे save button पर click करें
z3950/sru servers administration पेज खुलता है
हम इस पेज पर विभिन्न शीर्षकों के तहत जोड़े गए विवरण देख सकते हैं
अब इस library से records search करने के लिए koha homepage पर जाएँ
दो options के साथ नया पेज खुलता है
new from z3950/sru पर जाएँ और dropdown से books चुनें
z3950/sru search नामक नया window खुलता है
पेज के दाईं ओर field search targets पर जाएँ
यहां आप z3950 target देख सकते हैं जिसे हमने पहले इस tutorial में जोड़ा था
अब library of congress के समीप चैकबॉक्स पर click करें
उसी पेज के बाईं ओर विभिन्न fields के साथ z3950/sru search है
इन fields में title पर जाएँ और clinical microbiology type करें
यदि आप चाहें तो आप बाकी के fields भर सकते हैं मैं उन्हें खाली छोड़ दूंगी
अब पेज के नीचे search button पर click करें
हालांकि क्लिक करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप internet से जुड़े हुए हैं
results नामक एक और पेज खुलता है निम्न शीर्षक के साथ विवरण प्रदर्शित करता है
अब पेज के दाएं तरफ जाएं और import field पर जाएँ
मैं title: clinical microbiology field के लिए import पर click करूंगी
आप अपनी आवश्यकतानुसार किसी any title के लिए import पर click कर सकते हैं
जब import पर clicked किया जाता है add marc record named नया window खुलता है
आप कुछ tags देखेंगे जिन्हें हमने library of congress database से imported किया था
लेकिन आपकी आवश्यकतानुसार संबंधित tags के लिए खाली fields आपको भरना होगा
याद रखें हमने इस पेज के विवरण को पहले के tutorial में भर दिया है
video रोकें और विवरण भरें
विवरण भरने के बाद पेज के ऊपर save button पर click करें
items for clinical microbiology by ross philip w नामक नया पेज खुलता है
add पेज के नीचे add item button पर click करें
items for clinical microbiology by ross philip w पेज खुलता है
इसके साथ हमने library of congress से koha में clinical microbiology पुस्तक का विवरण सफलतापूर्वक imported किया है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने z3950 का उपयोग करके catalog में records जोड़ना सीखा
नियतकार्य के रूप में z3950 का उपयोग करके catalog में serial का रिकॉर्ड जोड़ें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project का सारांश देता है
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया अपने प्रश्नों को समय के साथ इस forum में post करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद